ये फोटो में कोई एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है।

ये जो फोटो है इसमें मेरको दिख रहा है कि बहोत सारे ए_सी हैं जोकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ही हो सकते हैं।

और नदी के पास एक ब्रिज दिख रहा है मेरे को --

ये फोटो में मेरे को देखके लग रहा है कि ये कोई स्कूल है।

रोड पे बाइक्स चल रही है कार्स चल रहें हैं।

और आजू बाजू में बहोत सारे पेड़ हैं बहोत हरे भरे पेड़ हैं और चबूतरा जो है वो लाल कलर का दिख रहा है।

स्कूल का बस येलो है और ग्रीन पेड़ हैं बहोत सारे और व्हाइट स्कूल है।

ये जो फोटो है वो कोई पार्क की लग रही है।

इसपे एक्सरसाइज के लिए बहोत सारी इक्विपमेंट दिख रहें मेरे को --

जो कि इसके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मेसी फ्यूजन कैफे एंड लॉन्ज --

एक बिल्डिंग में लिखा हुआ है डॉक्टर महाशंकर जनरल हॉस्पिटल ।

दो लोग खड़े हैं सामने का व्यू पूरा एकदम ग्रीनरी है।

उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टारबक्स कॉफी --

क्योंकि इसके बीचो बीच जो बना है वो रेस करने का बना है।

ये जो फोटो है वो रोड पे की फोटो है।

इसमें ब्लू एंड व्हाइट कलर की कांबिनेशन के गुब्बारे हैं।

और स्टेज पे चार पांच लोग खड़े हैं स्क्रीन चालू है।

ये फोटो देखके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रॉसरी शॉप है शायद या तो किचन है।

ये जो फोटो है वो किसी कैफे की लग रही है।

पीछे एक बिल्डिंग है उसके ऊपर दो टाके दिख रही है पेड़ पौधे हैं बहोत सारे --

ये फोटो को देखके मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई कॉफ़ी शॉप है जिसमें कॉफी बनती है किचन टाइप --

और गेट खुला हुआ है लाइट जल रही है।

और बाजू मे पिंक कलर का फूल है वो ऐसा फु वॉल आर्ट है।

ये जो फोटो है वो कोई सी एरिया का दिख रहा है।